बैंक के अंदर ए.टी .एम मशीन में कुछ आदमी दिखाई दे रहे है धन्यवाद्।

इस तस्वीर में एक आ एक दुकान दिखाई दे रही है और दुकान बाजु में दो आदमी लोग खड़े है।

पेड़ और पौधे दिखाई दे रहे है और एक ऑटो भी दिखाई दे रहा है धन्यवाद।

इस चित्र मे कुछ बच्चे नीचे बेठे दिखाई दे रहे है एक दीवाल है दीवाल के ऊपर सफेद और कचिया कॉलर कलर लगा हुआ है।

जमीन पर बे बेठे बच्चे लोग कुछ अ क्राफ्ट म अ का काम कर रहे है और प्रोजेक्ट बना रहे है धन्यवाद।

इस चित्र एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर मे तीन आ भगवान की तीन मूर्तियाँ दिखाई दे रही है और एक आदमी आ पूजा करते हुए नीचे दिखाई रहे है।

एक लड़का डांस करते दिखाई दे रहा है जिसके हाथो मैं भी जुते पेहने हुए है धन्यवाद्।

इस चित्र मै कुछ बच्चे अ स्कूल जाते हुए दिखाई दे रहे है और स्कूल के अंदर कुछ अ लेडिस और जेन्ट्स खड़े दिखाई दे रहे है।